और तीन मूर्तियां अंदर रखी हुई है एक सावले कलर में है एक ब्लैक कलर में है एक --

कुछ जला रहा है और अ मिट्टी डली हुई है साइड में ग्रिल लगी हुई है।

और साइड में शायद ककड़ी भी रखी हुई है और एक आदमी आ रहा है एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहाँ पर लेडिज सेंटर दिख लेडिज सैलून दिख रहा है जहाँ पर वूमेन का है और जो की ऊपर में है जो --

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है बैग टांगे और पत्थर भी दिख रहा है बहोत सारे चट्टान --

और साथ एक चक्की हुई है।

यहां पर एक आदमी जो है झाड़ू लगा रहा है और पीछे में पोस्ट ऑफिस है शायद और जो आदमी है --